और हमे यहां पर एक बोर्ड दिखाई दे रहा है जो कि काले कलर का नज़र आ रहा है उसके ऊपर कुछ लिखा दिखाई दे रहा है और हमे यहाँ पर दो लाल कलर के लाइट दिखाई दे रहे है और बहुत सारी किताबे नज़र आ रही है और बहुत सारे पेन दिखाई दे रहे है।

एक बहुत ही बड़ी दुकान दिखाई दे रही है दुकान मे हमे बहुत सारा सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा और हमे यहाँ पर कांच की बेकरी भी दिखाई दे रही है और हमे यहाँ पर पंखा दिखाई दे रहा है और हमे यहाँ पर कांच का बना हुआ दीवार दिखाई दे रहा जो की लकड़ियों के बीच मे नजर आ रहा और हमे यहाँ पर --

एक बहुत ही बड़ा टीन का सेट दिखाई दे रहा है जोकी टीन का बना हुआ नजर आ रहा है ओर उसपे ऐंगल लगे हुए दिखाई दे रहे जिसका पिलर बना हुआ हे।

बस में बहुत सारे लोग बैठे दिखाई दे रहे है और हमे उसके पीछे में बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है पेड़ का कलर हमे हरा नज़र आ रहा है और उसके बाजु में हमे बहुत --

और हमे यहा पर एक पुतला दिखाई दे रहा है जोकि गोल्डन कलर का नजर आ रहा है और दीवाल का कलर हमे पीला दिखाई दे रहा है ओर कोडा भी दिखाई दे रहा है और हमे यहा पर बहुत सारे झंडे रखे भी दिखाई दे रहे है और हमे यहा पर एक पेड़ दिखाई दे रहा है जोकि बोह --

बहुत ही बड़ा पानी की नदी दिखाई दे रही है जिसमे की बहुत सारा पानी नजर आ रहा है पानी का कलर हमे यहाँ से नीला दिखाई दे रहा है और उसके अंदर हमे एक बोट दिखाई दे रही है बोट का कलर हमे सफ़ेद दिखाई दे रहा है।

और हमे यहाँ पर बहुत सारे खंबे दिखाई दे रहे है जिसमे की लाइट लगे हुए नजर आ रहे है और हमे यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है जो की बहुत अच्छा और खूबसूरत नजारा लग रहा है।

बहुत सारी कार खड़ी नजर आ रही है कारो में हमे बहोत सारी कार नजर आ रही है कार का कलर हमे काला ओर लाल दिखाई दे रहा है ओर कुछ कार का कलर हमे सफेद नजर आ रहा है ओर हमे यंहा पर एक आदमी खड़ा दिखाई दे रहा है जोकी बहुत सारा --